और यह रूम अलबेस्टर के बनाये गए हैं और ये जगह बहुत ही खास साफ सुथरा दिख रहा है और यहाँ नजारा भी अच्छा है।